इस दृश्य के अंदर शादी के लिए सजाया गया स्टेज दिखाय रखा है। जो की रंग-बिरंगे फूलो से सजाय गया है।

जो कि लाल रंग की ईटों से बनाई गई है।

गेंदे के फूल लगे हुए नजर आ रहे है।